इस मैदान के बीच में एक कुआं जैसा आकार बनाया गया है।

वह हाथी पालतू हाथी लगता है।

जिसमे बहुत सारी दुकान भी दिखाई देते हैं।

यहा मैकेनिक बहुत अच्छे ढंग से काम करते हैं बहुत कम पैसे लेते --

यह सरकारी होती है यहाँ बहुत सारे लोग किताब पढ़ने के लिए पेपर पढ़ने के लिए आते हैं।

यह हारमोनियम दुकान है यहाँ हारमोनियम की --

और बगल में भी --